इस फोटो में मुझे कुछ बच्चे नजर आ रहें जोकी एक बेंच पर बैठे हुए हैं और एग्जाम दे रहे हैं उनके हाथ में कागज --

गमले बड़े भरे हुए है फूलों से और ये इसमें एक कांच का डोर भी लगा हुआ है।

में ए दो आदमी जा रहे हैं और कई सारे पेड़ उनके पास में कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिनमें से बैठने के लिए तीन --

लकड़ी के दो बॉक्स बने हुए है और उसी के पीछे दो हिरन और है और उनके चारों ओर पेड़ पौधे ही लगे हुए है।

कान्हा जी की मूर्ति नजर आ रही है जिसका रंग सफेद है और उनका चेहरा ठीक दिखाई नहीं दे रहा और उसके पीछे --

मस्जिद के अंदर सीमेंट का फर्श हो रखा है और यह हरे कलर की है।

इस तस्वीर में मुझे एक जगह दिखाई दे रही है जिसमें कुर्सियां लगी हुई है और ऊपर से दीवार का रंग भूरा है और उसके ऊपर कुछ बल्ब --

इस तस्वीर में मुझे एक आदमी नजर आ रहा है जोकि आईने में अपनी तस्वीर ले रहा है और उसके हाथ में --

इस तस्वीर में मुझे एक जीम दिखाई दे रही है और जिम का कुछ सामान नजर आ रहा है और उसमें दो आदमी --

इस तस्वीर में मुझे बहुत ही सुंदर और आकर्षित गणेश जी की मूर्ति नजर आ रही है जिसके ऊपर --

इस तस्वीर में मुझे एक ऑफिस नजर आ रहा है और ऑफिस में एक ए_सी लगी हुई है और इसकी दीवारें सफेद रंग की है।

बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं और इसमें मुझे एक पेड़ नजर आ रहा है जिसका कलर भूरे रंग का है।

इस तस्वीर में मुझे कई सारे पानी की बॉटल्स और कई सारी कोल्ड ड्रिंक्स नजर आ रहे हैं जिनमें बिसलेरी पानी की बॉटल्स चूड़ा --

भूरे कलर का कोर्ट पहना हुआ है और उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा और उसके काउंटर पर काउंट करने वाला --

इस तस्वीर में मुझे अंदर पानी नजर आ रहा है जिसके चारों ओर लाल कलर की बॉर्डर बनी हुई है और --